और यहां पे वह चार मिस्त्री काम करते हुए दिखाई दे रहे है।

यहां पे बहुत सारे लोग नगाड़े बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं।